यहां पर एक आदमी चढ़ रहा है। दूसरे आदमी के पास जा रहा है और यहां पे हरियाली है और यहां पे छोटे-छोटे पेड़ पौधे हैं। यहां घास भी है।

और उधर कुछ रखा हुआ है। इधर पेड़ पौधे हैं और इधर ये चढ़ रहा है और थोड़ा पानी भी है। यहां बोहोत अच्छा लग रहा है।

पैरैरे पेड़ -पौधे हैं बोहोत ही सुन्दर लग रहा है और यहाँ पर रोड है रोड के बीच में एक सब वाइट कलर की--

यहां पे गोभी रखी हुई हैं। गोभी गड़ी हुई है रत्ती में और कुछ अच्छा लग रहा है यहां पे। गोभी रखी हुई गोभी गड़ी हुई हैं। ये गोभी कटेंगी तब बीचेंगी अ पै --

यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है वो टी -शर्ट पहना हुआ है और यहाँ कपड़े बिकने वाले हैं और ये गरम कपड़े हैं बच्चों के और बड़ों के भी हैं गरम कपड़े और यहाँ पर कुछ रखा हुआ है।